तस्वीर में आप--

बहुत सारे झूले लगे--

एक दुकान देख रहे है।

एक रेस्टोरेंट दिख रहे हैं पीछे--

एक ऑटो खड़ा दिख रही है।

आप बहुत सारे फ्रूट दिख रहे हैं यहां पर।

आयुर्वेदा का क्लीनिक देख रही है।

जो की एम_डी हैं।

जहां बहुत सारे--

इस तस्वीर में--

एक्टिवा रखी हुई है।

यहां मोटूल अलमारी--

इस तस्वीर में--

पार्क दिख रहे हैं।

काम करता देख रहे है।

आप एक जिम देख रहे हैं।